और वो लड़का कुछ पेहना हुआ है और नीचे में से ऐसा बहोत बड़ा बना--

और बेंच है जो कांच का बना हुआ है।

ये एक मंदिर है और इसके अंदर बहोत बड़ा दीप जैसा कुछ जल रहा है।

ये जंगल इलाका है यहां पे बहोत बड़ा पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर से बहोत बड़ा झरना बह रहा है।

एक मेडिकल शॉप है यहां पे बहोत सारे दवाइयां--

दरवाजा है जो ब्राउन कलर का है और मशीनें पीले कलर की है। मशीन के ऊपर कुछ लिखे है।

और खड़े हुए है और मुझे भी --

ये एक लड़का है हम इसे जैसे है--

यह जेंट्स वेयर वाला कपड़ा दुकान है जहां पे छब्बीस जनवरी के लिए--

यहां पे एक आदमी है जो पोस दे कर फोटो खींचा रहा है।

और वह जेगिंस भी पेहनी हुई है बहुत सारे कपड़े हैं और एक जींस भी है यहां पे--

जहां पे खड़ी हूं बहोत सारे बाईकें भी हैं यहां पे और बहोत सारा पेड़ भी है यहां पे और बिल्डिंग में कुछ बना हुआ--

और यहाँ पे और ए दो--